जिस पर सौर ऊर्जा की प्लेट लगी हुई है।

और एक पानी की टंकी भी रखी हुई है छत के ऊपर।

और ऊपर से पार्क के बहोत सारे तारे खींची हुई भी दिखाई दे रही है।

जो पिंक कलर के पेंटिंग की गई है।

इस चित्र में यह एक मॉल है।